ग्राउंड में कुछ बाइक रखी हुइ हैं और एक मार्सल रखी हुई है।

जिसमें झूला लगा हुआ है बोहोत सारी कुर्सियां डली हुईं हैं।

इस साइड बिल्डिंग है। दोनों बिल्डिंग के बीच ग्राउंड हैं।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

कुछ खंबे और लगे हुए हैं जिनसे जाली बंधी हुई है। ग्राउन्ड के अंदर --

प्लेट रखी हुई है और पूरे हाल में --

तालाब के एक किनारे पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग --